एक सोफा लगाया हुआ है.

आगे के साइड साइड ढे-ढेर सारा.

कुछ लड़का और लड़किया हैं जोकि कराटा कर रहे हैं.

कुछ दवाल पर कुछ चिपकाया गया हे तस्बीर.

और दो लाइट बर रहे हैं.

टेबल पे कुछ ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हे.

और लकड़ी का दरवाजा है.

तीनथे एकथे खुला है दूथे बंद है एकथे सीटा से गिराया हुआ है.

और एक खुला है जो उसमे लाइट बर रहा है समान है उसमे.

दीवाल पर रखा गया एक पेंटिंग करके।

और उसका आरी आरी मकान है।

और आगे की साइड पर भी बोर्ड है.

ऊपर ब्लू कलर का पेंट किया हुआ हे.

ये सब्जी मंडी है यहां ढेर सारा औरत है।

बाइक खड़ा है पेड़ है।

सिलाई सेंटर है अंदर बच्चों के खेलने के लिए बैट गेंदा है।

टेबल के ऊपर बिजनेस सामान है.

और अलग अलग डिजाइन के कपड़ा पहने हैं सुटर भी पहने हुए हैं.

जो की एक रूम हे और निचे कुछ बिछाया गया हे. औ--

एक आदमी टेका रहा है एक आदमी ढो रहा है.

देख रहे हे यहाँ बहोत ही तीन चार्गो मशीन हे.

और पेड़ का उस साइड भी ज्यादा ही पेड़ है।